इनके राइडर्स अभी कहीं गए हुए हैं और पीछे बैकग्राउंड में एक ऊँचा सा पहाड़ दिख रहा है और पहाड़ से पहले और बाइक के बीच में एक नदी भी एक तालाब जैसी --

ये तस्वीर एक इंडस्ट्री की है शायद जहाँ पर पंखे जैसी कोई चीज बनती है।

यह तस्वीर एक एल्युमीनियम इंडस्ट्री की है जहाँ पर ऐल्यूमिनियम के बने हुए साँचे रखे हुए है और काफ़ी कुछ साँचे रखे है एक के ऊपर एक र इस तरीक़े से रख कर के एक दो तीन चार छे--

ये तस्वीर सड़क से ली गई है एक शॉपिंग मॉल की है जिसमें के लिए बड़े-बड़े होल्डिंग लगाए गए हैं जहां पर लड़की लगी हुई है और बैनर्स भी बने हुए हैं।

यह तस्वीर फल की दुकान की है जहां पर मुसम्मियों को बहुत व्यवस्थित ढंग से सजाया गया है पड़ोस में अनार भी रखे हुए हैं।

ये तस्वीर शुभ यात्रा की है जिसमे हय-हय जो बड़े-बड़े रथ रथे ले जाया जा रहा है जिसमे माइक की व्यवस्था की गई है आगे की तरफ दो घोड़े-छोटे छोटे बने हुए है।

चित्र बनाए गए हैं छोटे-छोटे खिलौने जो अलग-अलग कलर के भी है जिसमें पिंक कलर के स्क्वायर है रेड कलर के आयत वाले खिलौने हैं और व्हाइट कलर के कुछ क्यूब्स बने हुए हैं।

--और कुछ एडवरटाइजमेंट के लिए होर्डिंग्स लगे हुए है रात का समय है इसलिए लाइट जल रही है और बाहर की तरफ काफी अंधेरा है।

ये तस्वीर एक न्यूली कंस्ट्रक्शन मकान की है। जिसका लिन्टर पड़ने वाला है। जहां सरिया बिछ चुकी है। सरियों की डिफरेंट लेयर बिछ चुकी है और आस-पास में काफी लेबर्स खड़े हुए हैं।

इस तस्वीर में बने हुए बांस से बने हुए छोटे-छोटे प्रोडक्टस भी दिखाई गए हैं।

जैसे की दो कड़ियां रखी हुई है दो गमले के रूप में रखे हुए हैं और एक बड़ी सी रोटी के लिए कड़ियां रखी हुई है पीछे की तरफ एक चेयर भी पड़ी हुई है चेयर पे बैठ कर के है आराम किया जा सक --